इसामसी जी को याद किया जाता है और यहाँ पे कोई भी इच्छा होती है उसे मांगा जाता है और यह काफी शांतिपूरक होती है।

ये रोड पे एक बस खड़ी है जो की ब्लू औ-और वाइट कलर की है और इस बस पे अमन ट्रेवल्स लिखा हुआ है।

ये बोर्ड का कलर रेड और ब्लैक में है और इसपे लिखा हुआ व्हाइट कलर का है और यहाँ कुछ पेड़ वगैरा भी है अच्छी व्यू है।

ये सरिया का काम बहुत सारा रखा हुआ है और ये काम अभी चल रही है।

और ये काफी ऊँची बिल्डिंग है और यहाँ के पास में भी एक बिल्डिंग है।